और एक ने नीले कलर के कपड़े पहने हैं तो दूसरे ने हरे कलर के कपड़े पहने हैं।

रोड में बहुत सारी गाड़ियां बाइक ऑटो रिक्शा हमें दिख रही है कई जगह बाइक और गाड़ियां लगी हुई भी हैं और पीछे की तरफ बिल्कुल सीधा हैं।

तो इस फोटो में हमें खुला दृश्य देख रहे हैं जहां पर --

तो इस फोटो में हम देख सकते हैं और ये एक होटल के अंदर का दृश्य है और यहां पर बहुत सारे--

तो इस फोटो में हम एक खुला दृश्य देख रहे हैं और चारों तरफ हमें बर्फ दिखाई दे रही है।

कम्बल में दिखाई दे रही है एक बेड पर--

एक तरफा में दीवार दिखाई दे रही है लाइट अच्छी तरह से जली हुई है एक बल नीचे पड़ा हुआ है।

अलग यहां पे खिड़की लगाई हुई है जिम की इक्विपमेंट्स यहां रखे हुए हैं एक आदमी भी हमें दिख रहा है।